अपने पिक्चर क्लिक करवा रहा है पोज़ करते हुए जिसमें ग्रे कलर का जींस साथ ही व्हाइट कलर के शूज भी पहने हुए हैं।

यहाँ छठ पूजन हो रहा है सभी ने अपने अपने मंडपों के ऊपर साड़ी और गन्ने लगाए हुए है।

स्टेज के सामने बहुत सारे लोग ग्रीन कलर की चेयर पर बैठे नज़र आ रहे है। स्टेज पर एक चेयर भी है जिसपे तीन लोग बैठे हुए है।

एक एटीएम है एटीएम का के बोर्ड का कलर ब्लू व्हाइट और रेड कलर है एटीएम के बाहर व्हाइट कलर का पेंट है येलो कलर के फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है।

यह एक सलून है जिसकी वाल्स का कलर व्हाइट और रेड है यहां पर येल्लो पर्पल व्हाइट ग्रीन रेड कलर के बै --